और ये कोल्ड ड्रिंक और नाश्ते की दुकान जैसा दिखाई पड़ रहा हैं।

डाइनिंग टेबल जैसा ही दिख रहा हैं। सब बैठ के उस पे खाने की तैयारी कर रहे हैं उपर सीलिंग फैन लगा हुआ हैं। रूम के अंदर सब है।

यह सबसे ज्यादा टमाटर ही दिख रहा है और हरी सब्जियां हैं।

सामने इस्पेस है अंन्दर जा के नवाज़ पढ़ते होंगे मोमडन लोग पीछे दो गुम्बद खड़ा है मस्जिद --